यहां हमें बहोत सारी गाड़ियां दिख रही--

यहां हमें लकड़े की कुर्सियां नजर आ रही हैं।

फूलों की मालाएं दिख रही है।

और पीली लाइट दिख रही है।

यहां हमें सीडी नजर आ रही--

यहां हमें एक सफेद कलर की दीवार दिख रही है।

यहां हमें एक खिड़की खुली हुई दिख रही है स्विच बोर्ड --

कई लड़कियां नाचती हुई दिख रही--

यहां हमें बहोत सारी दुकानें दिख रही--

यहां हमें एक रोड दिख रहा--

कार और ऑटो रिक्शा दिख रही--

एक पीले कलर की बिल्डिंग भी दिख रही है।

एक खंभा भी दिख रहा है और बहोत झाड़ दिख रहे है।

यहां हमें पत्तागोबी के प्लांट नज़र--

है बाइक के ऊपर एक बंदा पाइप से कलर ।

यहां हमें एक पूल दिख रहा है। पूल में --

यहां हमें एक वाटर पार्क दिख रहा है।

जैकेट में नजर आ रहा--